देखिए ये बिल्डिंग बहुत ही सुंदर है बहुत अच्छा लग रहा है देखिए फ्रंट में गेट है इसके अंदर जाइयेगा ऊपर एक हिन्दू --

घंगोर बादल और अंदर झंडा-उंडा और पीला कलर से पेंट करल हेय मंदिर --

इसे तो रेस्टोरेंट में खाना खाने लोग आए हैं जिसमें इधर एक लड़का-लड़की बैठे हुए हैं इधर कोई माँ बेटी बैठी हुई होगी और खाना खा रही है एन्जॉय कर रही है।